इस फोटो में एक बहुत ही प्यारी नदी दिखाई जा रही है।

इस रोड पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है ये रुलर एरिया में है।

इस मूर्ति की सजावट बहोत अच्छे तरीके से की गयी है।

ये किसी के बड्डे के लिए बनाया गया है और इसका डेकोरेशन बोहोत अच्छे तरीके से की गई है।

इस फोटो में देख सकते हैं की एक काउंटर है। एक रिसेप्सन की फोटो है। इस रिसेप्सन में देख सकते हैं कुछ लोग बैठ के अपना काम कर रहे हैं।